इस इमेज में नेचुरल तरीके से कुछ दिखाया गया है।

एक खम्मा दिख रहा है उसके ऊपर लाइट है पर वो लाइट जल नहीं रही है।

पीले कलर की टुकनियां है फोन पे का नीले कलर का बारकोड लगा हुआ है काले कलर का कुछ है।

इस में कुछ बच्चे हैं जो खेल रहे हैं।

इस इमेज में एक दीवार है एक घड़ी है कुछ गुब्बारे हैं एक सफेद कलर का गुब्बारा है दो ऑरेंज कलर के गुब्बारे हैं।

कुछ गेट है इसमे कुछ इंसान है जो खड़े हुए हैं।

कलरफुल दीवार है एक पर्दा है एक पंखा है कुछ इंसान है जो बैठे हुए हैं एक ऐसी है नीले कलर के चड्डी टंगी हुई है।

यहां लाइट हैं खम्मे हैं कुछ तार हैं।